इसमें चार बस स्टैंड किया हुआ है।

बाहर एक लड़का एक लड़की बैठा हुआ है।

आगे में बहोत सारा कुर्सी टेबल है।

जो बहोत सुंदर गेट बनाया हुआ है।

गेट का बाहर साइड में एक गाड़ी है दूसरा साइड में बाइक है गाड़ी है।

सामने में टेबल है चेयर है बहुत सारा।

नदी के बीच में बोड है।

ये एक रिसेप्शन रिसेप्शन रूम का बाहर है।

ये एक हॉस्पिटल का रूम है।

और बाल्टी है डॉसबिन है।

और ये रात का टाइम है।

आगे ग्राउंड में छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन पौधा --

नदी में पानी बह रहा है।

आगे में एक बोर्ड रखा हुआ है।

ये एक रूम है रूम का अंदर वॉकडोर लगा हुआ है जो दो कलर का है।